क्यूंकि साइड में पेट्रोल पंप भी दिख रहा है और एक अंकल आते हुए दिख रहे हैं जिन्होंने क्रीम कलर की पेंट पहन रखी है और रेड कलर का हाफ टी-शर्ट और सर पे --

एक हिरन बड़ा दिख रहा है और छोटे छोटे दिख रहे हैं क्युकी और पीछे है और एक सामने ही है इसलिए बड़ा दिख रहा है।